बगल में एक चक्र जैसा बना है जिसमें बहोत सारी लाइटिंगे दिख रही हैं और बीच में लाल कलर की लाइटिंगों जैसा कुछ दिख रहा हैं।

इसमें एक बड़ा सा टीन शेड दिख रहा है जिसके नीचे एक बलब जल रहा है सफेद कलर का। उसके नीचे बोर्ड पर कुछ लिखा है।

ऊपर एक बहोत बड़ा गुलाबी रंग का छत बना है जिसपर एक पोस्टर जैसा कुछ बना है उसमे दो व्यक्तियाँ के चेहरे बने है और बीच में लाल अक्षर से कुछ लिखा है।

इसमें एक लड़की का बना काउंटर दिख रहा है जिसके पास में दो चेयर रखी हैं। उसमें दो व्यक्तियों को धुंधली-सी तस्वीर दिख रही है। पीछे एक बड़ा कांच का दरवाजा है।

ऊपर आसमान सफ़ेद रंग का है और बगल से एक रोड जैसा जाते दिख रहा है। जिसमें किनार भी ईटों की बनी है।

उसके ऊपर एक फाउंडेशन बना है हल्के पीले रंग का और उसके ऊपर किसी --

नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं वो महिला और पुरुष हैं पीछे एक गोल्ड धर्म चक्र जैसा बना है और बगल से एक पोस्टर लगा है जिसमे भगवान् बुद्ध --

उस कार के बाय नट खुले ढक्कन मे कुछ कर रहा है। कार का पीछे का और सामने का टायर साफ तौर से दिख रहा है।

यह एक बहोत बड़ी बिल्डिंग का तस्वीर है जिसमे रंग बिरंगी सीरीज़ से इसको सजाया गया है सामने फ्रंट पर --

और आसमान भी नीले कलर का ही दिख रहा है। पीछे एक बड़ी-सी बिल्डिंग दिख रही है और आटो के सामने शायद एक ट्रक जा रहा है।

पीछे एक काले कलर का रॉड के ऊपर में सफेद कलर का एक बॉक्स जैसा कुछ बना है। पीछे रेतीला और पहाड़ी हिस्सा दिख रहा है।